ये किसी हॉस्पिटल या बिल्डिंग के बाहर की फोटो है जिसमें एक गाड़ी पुल से उतर रही है जिसका कलर लाल कलर है।

डाइनिंग टेबल लगी हुई है जिसके चारों तरफ चेयर्स रखी हुई है ऊपर बलूंस लगा हुआ है।

रेलिंग पे एक शर्ट सूखी हुई है और ऊपर कपड़ों की तरीबी लगी हुई है।